ट्रैक्टर पर स्वराज लिखा हुआ है जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है जो सफेद रंग का लिखा है।

तस्वीर कमरे के अंदर का है कमरे की दीवारें सफेद रंग के है।

यह तस्वीर खुले क्षेत्र का है।

चारों तरफ पेड़ पौधे हैं।

तस्वीर में दो टावर भी हैं।

यह तस्वीर एक कमरे के अंदर का है।

मैदान में कई सारे व्यक्ति खड़े हैं।

तस्वीर में दो व्यक्ति हैं जो बैठे हुए हैं जो सफेद रंग का चटाई पर बैठे हैं।

यह तस्वीर खुले क्षेत्र का है।

चारों तरफ पेड़ पौधे हैं।

पेड़ पौधे हरे रंग के है।

दीवारें पीले और सफेद रंग के है।

हर तरफ पेड़ पौधे हैं।

ईमारत की दीवारें पीले और लाल रंग के हैं।

पेड़ पौधे हरे रंग के हैं चारों तरफ चट्टान है।

चारों तरफ लाइट लगी हुई है।

आसमान साफ है और नीला है।

कई सारे वस्तु सेल्फ में रखें हुए हैं।

इमारत पर महावीर ऑटोमोबाइल विश्रामपुर लिखा हुआ है जो सफेद रंग से लिखा है जो अंग्रेजी में लिखा है।

इमारत की दीवारें सफेद रंग की हैं।

तस्वीर में एक छोटा कच्चा रास्ता भी है।